यहां पे दो आदमी है एक पेंट कर रहें है और एक सीढ़ी को पकड़े हुए और पेंट --

पॉल खड़ा हुआ जो तार घीचा हुआ और ऊपर का आकाश का रंग व्हाइट ही--

पूर्व अर्पण किया हुआ है और गांधी जी चश्में लगाए हुए है।

यह महावीर जी का मंदिल है जो अच्छा लग रहा है और ये--